सामने सफ़ेद और लाल कलर के फूल है सजावट है।

पे एक गमला टंग रहा है जो जिसपे ऑरेंज फूल हैं ।

जो लाल और सफ़ेद कलर का है। एक लाइट है |

क्रीम कलर का है लाल कलर की बॉर्डर है।

जिसमें फसलें हे उसके अलावा कुछ पेड़-पौधे हे।

यज्ञ का है और इसके अलावा फ़र्श है जो अ अ --

और अ हरे कलर के उसपे पैर पोछने के रखे हुए हैं ।